देखने में तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जुहू बीच है लेकिन ऐसा आप हमारे गोरखपुर में भी नौका बिहार पे आनंद ले सकते हैं।

केक ऑर्डर करन करने गए जहाँ पे ह्रदय आकृति वाली एक केक हमें काफी पसंद आई और हमें --

ऐसा लग रहा है हमारी महिला मित्र को भी ये केक काफी अच्छा लगेगा।

ये किसी गेट का दृश्य है और यहाँ पे कोई दक्षिण --